में ऊपर में वाइट कलर रेड कलर और ब्लू कलर के जग रखें--

यहां पे सामने में रोड दिख रहा है और बगल में दो छोटे छोटे पौधे दिख रहे--

यह एक किराना स्टोर के अंदर का दृश्य है यहां पे सामने में एक छोटा सा काउंटर है।

और अंदर में रैक पे बहुत सारे समान रखे गए हैं।

यहां पे सामने में एक आदमी खड़ा है जो टीशर्ट पहने हुए है और मास्क भी लगाया है यहां पे राइट साइड में एक औरत खड़ी है जो वाइट कलर का कपड़ा पहनी है।